नीले रंग के पानी के ड्रम रखे हुए है कुछ लोगों ने मास्क लगाया हुआ है ऊपर की तरफ भी पन्नी से इसे ढका गया है।

बस स्टैन्ड मे बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है कुछ बैनर लगे हुए है और नीचे की तरफ कुछ बेग और सामान रखे हुए दिखाई दे रहे है बस के अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है और पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे।

एंट्री गेट दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है बाहर की तरफ एक पेड़ नुमा आकार से गेट बनाया गया है ।

कुछ लड़किया है और एक लड़का है इन्होंने हाथ मे चप्पू पकड़ा हुआ है ये बोट मे खड़े हुए और बैठे हुए दिखाई दे रहे है और बोट मे बीच मे इन्होंने लाइफ सेवि सेविंग जैकिट पहनी हुई है पानी दिखाई--

ऊपर की तरफ रुफ मे बहुत सारी लाइट लगाई गई है और कुछ कलर लाइट भी लगी हुई है साइड में एक बैनर खड़ा है।

कुछ आदमी बाइक लेकर इसे पार कर रहे है और नदी के साइड देखने पर एक बड़ा सा सिमेन्ट का बड़ा पुल बनाया गया है नदी मे एक पतली सी बोट पड़ी हुई है और साइड मे मिट्टी है जिस पे एक बाइक खड़ी हुई।

सामने एक ए-टीम-एम दिखाई दे रहा है ए-टी-एम पर जाने के लिए एक कांच का गेट लगाया गया है बाहर की तरफ दो आदमी खड़े हुए है एक आदमी ने हाथ पर एक हेलमेंट लटकाया हुआ है बाहर की तरफ एक बड़ा सा बोर्ड लिखा है जिस मे सी-यू-बी ए-टी-एम लिखा हुआ है

सामने फोटो मे एक आदमी खड़ा हुआ है जिस ने शर्ट पहनी हुई है ये हाथ से विकट्री का साइन शो करता हुआ दिख रहा है।

सामने दो बोट रखी हुई दिखाई दे रही है जिस के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जिस ने लाल रंग की चेक वाली शर्ट पहनी है और नीले रंग की पेंट पहनी है ।

पीछे की तरफ से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है ये चट्टान अ कट कर के एक प्रॉपर शेप मे बनाई गई है ।

और इसने पीछे बालों मे गजरा लगाया हुआ है पीछे की साइड एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है जिस के ऊपर कुछ बैनर लगा हुआ है और ये औरत नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है यह काफी खूबसूरत लगा रही है और यह कथक डांस कर रही है ।

और केमरे की मदद से उसे पीछे की स्क्रीन मे भी शो किया जा रहा है नीचे हरे रंग की मैट को बिछाया गया है और कुछ स्पीकर्स लगे है ।

लोहे की सरियाओ से बना हुआ एक पिलर टाइप का दिखाई दे रहा है पीछे बहुत सारी सिमेन्ट की बोरिया पड़ी हुई है ।

एक चर्च दिखाई दे रहा है जिसे सफेद रंग से पैंट किया गया है इसके एंट्री गेट पे ऊपर की तरफ दो क्रॉस के साइन लगे हुए है ।

एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में बहुत सारी खिड़कियाँ दिख रही है जिनमे कर्टेन्स लगाए गये है ऊपर की दीवार पे स्टार्स लटकाए गये है नीचे की तरफ एक ग्रीन और--